यहां एक पुतला भी है जिसने कपड़ा पहना हुआ है लाल रंग --

इसके चारो ओर महिलाएँ और पुरुष हैं।

इसके इसके पीछे एक मकान भी है जो हारे रंग और पीले रंग से रंग --

इसके चारो ओर गंदगी फैली हुई है।

दो बाइक लगी हुई है एक जिसका रंग काला है।

सामने से ए.टी.एम. है | इसके बाहर पीले रंग से रंगी हुई है ।

यह शीशे का है बना हुआ है इसके पीछे --